खंबे लगे हुए जिसपे पोस्टर लगा है जिसपे जिला सेवायोजन कार्यालय लिखा हुआ है।

पीछे अलमारियां बनी हुई है जिसमें कांच की है इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है।